नीचे में तीन कुर्सी है दो कुर्सी लाल है एक कुर्सी--

लड़कियां है जो एक डांस ग्रुप का है।

टीना और बंबू से बनाया गया है गैरेज के अंदर में।

मुझे इस तस्वीर में एक शोरूम पे--

और उसके साइड में एक बड़ा सा लंबा सा चेयर जो की बैठने के लिए।

मुझे इस तस्वीर में दो गधे दिखाई पा रहे है जिनका कलर ग्रे है और उनके साइड में एक व्हाइट फेंसिंग है।

वॉल व्हाइट कलर है सीलिंग में लाइट्स लगे हुए हैं।

जिसमें कॉलेज के बाहर में एक गार्डन है गार्डन --

सफेद ग्रास से लगाया गया है।

सब शेल्फ में रखे गए हैं और सीलिंग में दो लाइट दिखाई दे रहा है जो कि जल रहा है।

बहुत सारे किताब बुक सेल्फ में रखे गए हैं।

दोनों के साइड में एक नाव है एक ने जींस पहना है और दूसरे ने एक काले कलर का पहना है।

इस तस्वीर में एक ऑफिस का अंदर का जगह दिखाया गया है।